यह बहुत चारे लोहे के पार्ट पड़े हुए है जिसमे नीचे बहुत चारे पार्ट पड़े हुए है जमीन पर।

खड़ा है एक अंदर औरत बैठी हुही हुई है इसमे बहुत सारी किताबो के पोस्टरर्स टंगे हुए है।